मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में पॉप अप और इमेज ऑप्शन्स की सेटिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पॉप अप और इमेज प्रिफेरेंसस को कैसे सेट करें
टूलबार कस्टमाइज करना
पॉप अप विंडोज या पॉप अप्स विंडोज होती हैं जो आपकी अनुमति के बिना स्वतः प्रकट होती हैं
वे आकार में भिन्न होती हैं लेकिन आम तौर पर पूरी स्क्रीन नहीं घेरती हैं
कुछ पॉप अप वर्तमान फ़ायरफ़ॉक्स विंडो पर ऊपर खुलते हैं जबकि दूसरे फ़ायरफ़ॉक्स के नीचे दिखाई देते हैं
pop यूपी काफी तकलीफदेह हो सकते हैं और इसी वजह से आप उन्हें अक्षम करना चाहते हैं
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल कर रहे हैं
अब फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउजर खोलते हैं
यूआरएल बार में wwwpopuptestcom टाइप करें
ENTER की प्रेस करें
यह साइट आपको बताती है कि pop यूपी क्या है
multi पॉपअप टेस्ट लिंक पर क्लिक करें
आप 6 पॉप अप्स देखेंगे
बैक पर क्लिक करें
2 और पॉप अप दिखाई देते हैं
देखें कि वे कैसे तकलीफदेह हैं
फ़ायरफ़ॉक्स आपको pop अप्स और pop अंडर्स दोनों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है
यह एडिट और फिर प्रेफरेंस पर क्लिक करके किया जाता है
विंडोज़ यूज़र्स कृपया टूल्स और फिर आप्शंस पर क्लिक करें
प्रेफरेंस विंडो में कंटेंट टैब पर क्लिक करें
डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लॉक pop यूपी विंडोज ऑप्शन पहले से ही ऑन होता है
यदि नहीं तो आपको इसे चेक करने की जरूरत है
तो आपको फ़ायरफ़ॉक्स में pop यूपी प्रदर्शित होने से रोकने के लिए इसे सक्षम करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है
अब आप क्लोज बटन पर क्लिक करके फायरफॉक्स प्रेफरेंस विंडो बंद कर सकते हैं
आप एक्सेप्शन अपवाद का भी चयन कर सकते हैं
एक्सेप्शन्स साइट वो होती हैं जिसके पॉप अप्स आपके लिए स्वीकार्य होते हैं
एडिट और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
विंडोज यूज़र्स कृपया टूल्स और आप्शंस पर क्लिक करें
एक्सेप्शन्स जोड़ने के लिए ब्लॉक pop यूपी विंडोज फील्ड के आगे एक्सेप्शंस बटन पर क्लिक करें
यह एक डायलॉग बॉक्स खोलता है
एड्रेस ओएफ वेबसाइट फील्ड में wwwgooglecom टाइप करें
एलो बटन पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें
प्रिफरेंसेस डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें
अब googleकॉम छोड़कर सभी साइट्स से पॉप अप्स अस्वीकृत होंगे
अब यूआरएल बार में wwwpopuptestcom टाइप करें और Enter की प्रेस करें
multi पॉपअप टेस्ट लिंक पर क्लिक करें
एक भी पॉपअप प्रदर्शित नहीं होता है
आपका पॉपअप ब्लोकर प्रभावी है
इमेजेस डाउनलोड होने में समय और बैंडविड्थ लेती हैं
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में इमेजेस को चयनात्मक रूप से डाउनलोड रोकने के लिए एक ऑप्शन है
एडिट और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
विंडोज़ यूज़र्स कृपया टूल्स और आप्शंस पर क्लिक करें
प्रिफरेंसेस डायलॉग बॉक्स में कंटेंट टैब पर क्लिक करें
लोड इमेजेस ऑटोमैटिकली चेक बॉक्स अक्षम करें
डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें
अब सर्च बार में फ्लावर्स टाइप करें और Enter की दबाएँ
गूगल होम पेज से इमेजेस पर क्लिक करें
प्रदर्शित पहले इमेज लिंक पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि इमेज लोड नहीं होती है
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स टूलबार्स कस्टमाइज करने के लिए कई ऑप्शन्स प्रदान करता है
मानते हैं कि हम किसी टूलबार को छुपाना चाहते हैं
उदाहरण के लिए मेनू बार
मेनू बार के खाली अनुभाग पर राइट क्लिक करें
और इसे अनचेक करें
बस इतना ही
मेनू बार को फिर से देखने के लिए टूलबार के खाली अनुभाग पर फिर से राइट क्लिक करें
अब मेनू बार ऑप्शन को चेक करें
टूलबार्स को कस्टमाइज करने के लिए फ़ायरफ़ॉक्स एडवांस्ड ऑप्शन्स प्रदान करता है
कुछ ऑप्शन्स देखें
टूलबार पर एक आइकन जोड़ें जो हमें एक क्लिक में वेब पेज प्रिंट करने की अनुमति देगा
टूलबार के खाली अनुभाग पर राइट क्लिक करें
कस्टमाइज पर क्लिक करें
कस्टमाइज टूलबार डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
डायलॉग बॉक्स के भीतर आप प्रिंट आइकन देखते हैं
टूलबार पर आइकन ड्रैग करें
डोन पर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स बंद करें
टूलबार में प्रिंट आइकन पर क्लिक करें
यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लाता है
अब हम प्रिंट नहीं करेंगे
अतः डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसेल पर क्लिक करें
आप टूलबार्स को जोड़ या हटा सकते हैं
ऐसा करने के लिए टूलबार पर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज चुनें
एड न्यू टूलबार बटन पर क्लिक करें
नई टूलबार के लिए एक नाम दर्ज करें
इसे सैंपल टूलबार नाम दें
ओक बटन पर क्लिक करें
अब सैंपल टूलबार पर एक आइकन डाउनलोड्स ड्रैग और ड्रॉप करें
ब्राउज़र में नये टूलबार पर ध्यान दें
टूलबार निकालने के लिए रिस्टोर डिफॉल्ट सेट बटन पर क्लिक करें
कंटेंट्स एरिया को अधिकतम करने के लिए हम आइकन का आकार कम कर सकते हैं
उसे स्मॉल आईकॉन्स नामक चेकबॉक्स चेक करें
000622 000426 डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए डोन पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि आइकन्स का आकार छोटा हो गया है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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि पॉप अप और इमेज प्रिफरेंसेस कैसे सेट करें
टूलबार कस्टमाइज करना
यहां आपके लिए एक नियत कार्य है
एक नई मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स विंडो खोलें
उनको छोड़कर जो wwwyahoocom से हैं सभी पॉपअप्स ब्लॉक करें
एक बुकमार्क्स टूलबार प्रविष्ट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro
यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद